दृश्य म में हम देख सकते है की यहाँ खाली मैदान है और यहाँ पर बहुत सारी गाडियां है जैसे की ट्रक बस कार आदि ये सब टूटी हुई है।

तेल लेने के लिए और लोग इधर उधर खड़े होकर बात कर रहे है और कुछ लोग लाइन में लगे है तेल लेने के लिए--

इस दृश्य मे पेट्रोल पम्प दिखाया गया हैं पेट्रोल पंप बहुत अच्छा से सजा है।

--दृश्य में एक ट्रैन को आते हुए दिखाया गया है यह ट्रैन धीरे धीरे अपने प्लेटफार्म पर आ रही है।

दृश्य में हमे सलून देखने को मिल रहा है यहाँ पे बहोत सारी चीज़े है जैसे की टी. वि. अ कुर्सी और भी बहोत सारी चीज़े है ये रूम काफी बिखरा पड़ा हुआ है।